जिसमें मिठाइयां नजर आ रही है।

यह गेंदें के फुल का बगीचा है तथा बगीचे में एक बच्चा खड़े हुए है।

साथ ही टेबलों के कुछ कुर्सियां भी डली हुई हैं।

इस डैम पर पत्थरों के बीचों बीच से--

आ रही है जैसे पलंग सोफा सेंटर टेबल आदि--

बाजू में एक बच्चा खड़े हुए भी नजर आ रहा है।

जिसमें अलग अलग तरीके की किताबें रखीं हुई नजर आ रहीं हैं।